और सभी एक जैसा ही योगा करते हुए हमे नज़र आ रहे हैं।

गौतम बुद्धा की पूजा करने के लिए वे आऐ हुए हैं।

और डिजाईन से खड़ा किया गया है। जिसमे सबसे नीचे में पांच है और फिर उसके उपर चार फिर उसके उपर तीन फिर उसके उपर दो।

अ में बगल में हमे कई सारे वृक्ष भी हमें नज़र आ रहे --

जेसा की आप देख सकते है यह द्रि --

हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो दो महल्ला है और देखने से यह प्रतीत हो रहा हैं।

इन फूलों को पानी दिया जा रहा है और यहाँ एक बहोत ही हरा भरा --

जैसा कि आप देख सकते हैं। यह दृश्य में हमे कई सारे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पे कई चीजें जैसे --

सभी लोग लगन से पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पंडित --

जैसा कि आप देख सकते हैं यह दृश्य में हमें एक --

एक पेट्रोल टंकी का --

अम दिखाई दे रहा है जहाँ पे कई गाड़ीयां अपने गाड़ीयों में पेट्रोल एवम डीजल --